जो उसमें वो लोग खाना खा रहे हैं उसका कलर रेड है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक समान दिख रहा है।

जैसे की आयरन ग्राइंडर बल्ब ।

यहां पे सिर्फ लड़के का तस्वीर दिख रहा है।

इसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे और एक छोटा सा नदी पानी बताओ अब भी दिख रहा है।

मुझे एक छोटा सा घर भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक लड़का तस्वीर के लिए एक साइड में पोज किया है किया है।

सब बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है।

तस्वीर में मुझे किसी प्रकार का ये एक केव है पत्थर का पूरा जिसके अंदर एक लड़का खड़ा है।

यह लड़का ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ--

फादर के बगल में एक बुजुर्ग दादी।

जिसके बगल में ही दो तीन बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

उसके बगल में है उसको खाने के लिए स्पून रखा है।

यह एक डॉक्टर का चैंबर है जिसमें बहुत सारा दवा रखा गया है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ी फैक्ट्री का गेट दिखाई दे रहा है।

ये गेट के बगल में दो तीन पेड़ पौधे हैं।

बीच में दो बोतल रखा है एक का कलर ग्रीन एक का वाइट है।

मछली वाला पाइप के सहारे मछली को धो रहा है।

बगल में एक छोटा सा बच्चा बैठा है।

यहां पर खोता बाजार नाम का एक बहुत बड़ा बाजार का बहुत बड़ा बिल्डिंग जैसा एक--

साइड में यहां पे एक छोटा सा पौधा है।

रूफ का ढलाई हो रहा है और यहां पे मुझे सात लोग आदमी दिख रहे हैं।

टँगा है उसके बगल में ही उसका रूम का दरवाजा है।